की दुकान है| यहां पे बहुत सारे पुस्तक रखे हुए हैं| यहां पे बहुत सारे मैगजीन भी रखे हुए हैं और डिक्शनरी भी रखी हुई है| एक यहां पे सफेद कलर का बोर्ड टांगा दिख रहा है।

ब्रिज के नीचे नदी है| नदी के किनारे पर एक बोट लगा हुआ है| बोट के अंदर चार-पांच आदमी लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं| एक आदमी खड़ा है और पीछे बहुत सार पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं| नदी का पानी काला दिख रहा है।